configuration management in admin interface पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम कुछ menu items के बारे में सीखेंगे जैसे कि
extend configuration
people और
report
इस tutorial को record करने के लिए मैं
आप अपने अनुसार किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
अब हमारी website को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया हुआ है
जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया drupal एक रूपरेखा ढांचा की तरह है तो यह वास्तव में बहुत कुछ नहीं है
जब हम अपनी site बनाने की शुरूआत करते है तो administration toolbar पर यह extend link बहुत ही महत्वपूर्ण है
extend पर click करें यह हमारी site पर सभी modules का संक्षिप्त विवरण दिखायेगा
modules फीचर्स हैं
हम बाद में उन्हें विस्तार से देखेंगे
यह कुछ modules की सूची है जो कि drupal में हैं
हम check marks के माध्यम से check सकते हैं कि कौन से एनेबल है या कौन से एनेबल नहीं है
extend menu हमें सभी modules या फीचर्स को देखने की अनुमति देता है जिसे हमने drupal site पर इनेबल किया है
इस श्रृंखला में हम अपनी site पर modules को जोडेंगे
अब configuration menu देखते हैं केवल site administrators को इस भाग को access करने की अनुमति होती है
क्योकि हम superuser या पहले यूजर हैं तो हम सबकुछ access कर सकते हैं
ध्यान दें कि यहाँ screen पर लाल रंग का popअप है
यह आपके screen पर हो भी सकता है या नहीं भी
यह दर्शाता है कि status report नहीं चल रही है और मुझे जाँचने की जरूरत है कि मेरी drupal site अप to date है
अभी मैं इसको अनदेखा कर रही हूँ और उसके बारे में तब सोचूंगी जब हम reports screen पर जायेंगे
यह विशेष menu हमें हमारी site के सभी विभिन्न पहलुओं को कन्फिगर करने की अऩुमति देता है
जैसे किsite information account settings text formats and editors performance issues maintenance mode image styles और अन्य
इनके बारे में हम इस श्रृंखला में बाद में विस्तार से सीखेंगे
लेकिन अभी के लिए अपनी site की जानकारी को अपडेट करते हैं
site information पर click करें और site name पर drupalville लिखें और slogan पर type करें a great place to learn all about drupal
जब हम इस तरह से कुछ बदलाव करते हैं तो वह पूरी site बदल देते हैं
यह content management systems विषयवस्तु प्रबंधन प्रणाली के बारे में बडे काम की चीज है
अब यदि हमारी site में एक पैज या so पैज हैं तो हर एक पैज के शीर्ष पर name drupalville होगा
यह वास्तव में static html में बडा सुधार है
इसके अलावा इस पैज पर email address है जो कि स्वचालित email में from address है
हम एक default front पैज और default 403 और 404 पैज भी चुन सकते हैं
याद रखें कि drupal में प्रत्येक पैज web form है
अतः किसी भी समय हम अपने drupal पैज में बदलाव करते हैं तो हमें submit या save पर click करना होगा
नीचे save configuration button पर click करें
फिर back to site पर click करें
ध्यान दें कि हमारे site का name अब drupalville है और site के प्रत्येक पैज पर slogan है
हम अगले tutorials में configuration menu को विस्तार से देखेंगे
administration toolbar में people पर click करें
यह हमें हमारी drupal site में people क्षेत्र में ले जाता है
आप list permissions और roles टैब देखेंगे
यह सिर्फ एक परिचय है हम इन्हें बाद में विस्तार से देखेंगे
roles section हमें यूजर बनाने की और लोग हमारी site पर the देख सकते हैं या the कर सकते है इन सब की permissions को manage करने की अनुमति देता है
यहाँ यूजरनेम admin है
यदि हम edit पर click करते हैं तो हम अपने यूजर account की सभी जानकारी देख सकते हैं
हम मौजूदा password को बदल सकते हैं
यदि हम नहीं जानते तो यहाँ इसे reset करने का विकल्प है यहाँ यह बताता है कि हमारा role administrator है
मेरा status active है और हमारे पास अपना personal contact form और location settings है
हम picture के नीचे browse button पर क्लिक करके अपनी picture को अपडेट या जोड़ कर सकते हैं
बुनियादी तौर पर यहाँ हम अपने profile को manage कर सकते हैं अब save पर click करें
संक्षेप मेंroles टैब हमें बहुत सारे roles को जोड़ने की अनुमति देता है
permissions टैब हमें उन roles के लिए कुछ निश्चित अनुमति देता है
और list टैब यूजर को उन roles को आवंटित करने की अनुमति देता है
उन्हें कुछ निश्चित permissions मिलेगी जिसके माध्यम से उन्हें drupal site पर कुछ निश्चित चीजें करने की अनुमति और कुछ निश्चित चीजें देखने की अनुमति होगी
people जहाँ हम अपने drupal website पर सभी यूजर्स को manage करते हैं
आखिर में अब अपने administration toolbar में reports को देखेंगे
reports पर click करें
यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की सूची दिखती है जिनकी हमें drupal site के बारे में पता करने की जरूरत है
जैसे कि available updates
recent log messages
a listing of all the fields on all entity types
status reports
top access denied और page not found errors
top search phrases और कुछ plugins जिन्हे हमारे प्रेक्षक उपयोग कर सकते हैं
available updates पर click करें यह सभी चीजों की एक सूची देगा जिन्हें अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है
हम यह भी देख सकते हैं कि अंतिम अपडेट 48 minutes पहले हुआ
यह cron द्वारा managed किया गया है और हमें इसे अपने server पर स्थापित करने की आवश्यकता है
अभी के लिए check manually पर click करें
drupal अब सभी चीजों की जाँच करेगा जिसे हमने installed किया है और जानें कि हम अपtodate हैं
यदि हमने अपने site के लिए ज्यादा modules या फीचर्स जोडे हैं तो यहाँ एक बडी सूची होगी
इस tutorial को देखते समय बाद में हम इसे फिर से देखेंगे
अब अपने site पर status report पर जाने के लिए reports पर click करें
जैसे कि drupal का कौन सा version हमारे पास है और cron इससे पहले कब रन हुआ
यहाँ हम एक link देख सकते हैं जहाँ से हम बाहरी तौर पर cron रन कर सकते हैं
हमारा database system database version आदि
आपको अपनी site के reports section पर कडी नजर रखनी चाहिए
खासकर यदि आप drupal के लिए सभी अपडेट को बनाए रखने के लिए और modules जिन्हें आपने download किया इनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं
अंत में help है और help हमें हमारी site के help page के लिए links देता है
जो कि हमारे administration toolbar का सारांश है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए है संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने मैन्यू आइटम्स
extend configuration
people और
report के बारे में सीखा
यह video acquia और os training से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे से संशोधित किया गया
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें औऱ देखें
spoken tutorial team कार्यशाला का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद